बगल में गेहूं का खेती किया हुआ है पेड़-पौधे है हरे-भरे है ऊपर आसमान दिख रहा है।

ऊपर से रोड बना हुआ हैं रोड पर आदमी चल रहा है बगल में एक आदमी खड़ा हुआ है घूमने वाला जगह है।

दुकान है दुकान बहुत सुंदर है सेब है संतरा है केला है अंगूर है कीवी का है और ये बहुत खाने में स्वादिष्ट लगता है पौष्टिक है और शरीर में बहुत लगता है ताकत देता है ।

चित्र है यहां पर लोग घूमने आते हैं और पहाड़ी क्षेत्र में झरने से पानी गिर रहे हैं गर्मी के दिन में लोग यहां बहुत विजिट करने जाते हैं और इसमें स्नान --